अ खाना आके लेके खा रहे है और दो-तीन लोग दे रहे है खाना अलग-अलग ब्रेड टिकी खाना है यहाँ पे एकचुली ।

यह एक ब्यूटी पार्लर है। जहाँ पे तीन व्हील चेयर लगे हुए है गुब्बारे लगे हुए है इसकी उदघाटन हुई है ए.सी. लग रहा है ए.सी. लगे हुए है शीशा लगे हुए है कई परफ्यूम वगेरा-वगेरा रखे हुए है।